हमें यहाँ पर देख सकते है कि हमें यहाँ पर एक बड़ा घर नजर आ रहा हैं।

हम यहां पर देख सकते हैं कि हमें यहां पर एक मैदान नजर आ रहा है।

इस अस्पताल में दो वैद्य बैठे हुए है और --

हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक --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

और इस सड़क के ऊपर बहोत सारे गाड़ियाँ भी जा रहे हैं। ऑटोरिक्शे बाइक स्कूटर दिखाई दे रहे --

बड़ा देवालय नज़र आ रहा है। इस देवालय के सामने एक बड़ा सड़क दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट के बाहार बहुत सारे बाइख हौर दो कार भी दिखाई दे रहे है।

हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक --

हमें यहा पर देख सकते हैं कि हमें यहा पर --

और यहां पर हमें बड़े-बड़े कंपलेक्स और बड़े-बड़े घर नजर आ रहे हैं।

इस किले के बाहर दो आदमी ठहरे हुए हैं और इस किले के बाहर बड़े-बड़े पेड़ भी हैं।